पूरा मन में फूल भरल है सब कति समान टांगल है और जे भेचात है और जो खरीदत है।

और एगो आदमी ह गाना गात हे और आदमी मन म्यूजिक बजात हे और आदमी मन इधर-उधर सजात --

ईहंल होटल का पार्किंग स्थान हवे जीहाँ सब कोई --

बहुत सजाईन धजाईन हवे और सब कोई मिलके दर्शन करत हाँय और फोटो लेहत है।

और एगो मुस्लिम स्कूल हे जी हाँ एगो गुरु जी ह लइका मन ला पढ़ात हवे।

एगो कपड़ा क दुकान अ अवे जी हा आदमी मन आएक हे।